एक मंदिर के बाहर का पिक्चर है। थोड़ी ही दूर पर कुछ सीढियाॅं हैं। यह सीढ़ियों पर एक आदमी बैठ कर है। यह आदमी शेड पर बैठ कर है।

यहाँ एक मस्जिद के बाहर का पिक्चर है। यह मस्जिद में बहुत सारे लोग खड़े हैं।

यह पिक्चर मे एक बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग के बाहर बाउन्ड्री है। यह बाउन्ड्री व्हाइट और रेड कलर की है।

यहाँ एक मस्ज़िद के बाहर का पिक्चर है। यह मस्ज़िद के बाहर ब्लू कलर का कारपेट रखा हुआ है।

यहाँ एक गड्ढे में सैंड रखा हुआ है। सामने में एक मंदिर है।

यहाँ एक टाइगर का शो सॉफ्ट टोय रखा हुआ है और एक स्टेज मे बलून से सजावट करी गई है।

यह पिक्चर मे एक स्टेज है। यह स्टेज के सामने कुछ लाल कलर की सीढ़ियाँ हैं और दो टेबल पर वाज रखी हुई हैं।

बहुत दूर थोड़ी दूर पर एक हरे और ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है।

यह बीच में काले रंग का लाइट स्टैण्ड भी है और दो डस्टबिन रखे हुए --

यहाँ एक हरा भरा पीपल का पेड़ है और थोड़ी ही दूर पर लाल रंग से पेंट किया हुआ एक घर है।

यह एक स्टेज का पिक्चर है। यह स्टेज में फूल से डेकोरेशन करी गई है।